जन की यकमा जी दिखेण लग्यूं का भैर का छिलका गाड्या छन अर भित्तर भित्तर ग्यूँ च दिखेण लगीं परत।